वहाँ एक भारत पेट्रोलियम का टैंक है जहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं एक खंभा लगा हुआ है और झंडे भी लगे हुए हैं ऊपर वादल भी दिख रहे हैं।

कुछ चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं पानी झरने से गिर के बेह रहा है।